ये एक हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है।

एक नदी है इसमें तो बतख दिखाई दे रही है जो काले कलर की है।

शुभराजी देवी इंटर कॉलेज लिखा हुआ है।